और छोटे छोटे बच्चे भी पास में खड़े हुए है जहां पर औरतें पूजा कर रहे हैं।

अ अ सारा यहां पे रेत दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी सामने खड़े हुए हैं।

यह तस्वीर किसी सब्जी मंडी की तस्वीर है जिसमें बहोत तरह की अलग अलग तरह की सब्जियां दिख रही है।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

आस पास बहोत सारे दरख़्त लगे हुए है पेड़ पोधे लगे हुए है।

अ एक मंदिर है और उसमें ऊपर में देख सकते हो भगवान जी बैठे हुए है।

जहां पे चार कुर्सियां पड़ी हुई है और सामने एक अ अ पंखा दिखाई दे रहा है।

अअ अ पौधे भी लगे हुए हैं अं और--

जहां पे बिजली की मरम्मत हो रही है कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं।

ये तस्वीर किसी बजन की तस्वीर है सामने कोई ओरते बेठी हुई है ओरतो ने गुलाबी रंग की--

यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने एक बैग भी डाल रखा है और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन भी है।

और दो तीन प्लेटे पड़ी हुईं हैं तीन ग्लास पड़े हुए हैं जिसमें पानी भरा हुआ हैं और एक बोतल पड़ी हैं जिसमें पानी भरा हुआ हैं।

जहाँ पे अ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं गेट पे राधा स्वामी लिखा हुआ हैं।

और साइड में रेता पड़ा हुआ है बहुत सारी ईंटे पड़ी हुई हैं।

जे तस्वीर एक क्लास की तस्वीर है जिसमें बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें--

में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है जोकि किसी--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

इस तस्वीर में अनन कुत्ते दिखाई दे रहे है जो की कुछ खा पी रहे है।

ये तस्वीर सैलून की तस्वीर है जिसके सामने बहुत सारी कुर्सियां लाल रंग की पड़ी हुई हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है जो--

और जिसमें बहुत सारी दालें भी दिख रही हैं जिसमें राजमा भी दिख रहे हैं तरह तरह की दालें दिख रही हैं।

ये तस्विर्रे एक पेट्रोल पम्प की तस्वीर है जिसमे सफेद रंग किया हुआ है और सामने दो आदमी--

यह ये तस्वीर किसी ऑफिस की तस्वीर है जिसमें बैठने के लिए सोफे लगे हुए हैं।

तस्बीर में एक आदमी दिख रहा है जिसके आस पास बोहोत बड़ी बड़ी पहाड़िया है चट्टानें है।

जो पीला रंग की है और सामने एक बंदा टोपी पेहने हुए खड़ा है।

इस तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रही है नदी में एक दो नाव जा रही हैं नाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं।